खिरकी खुली हुई है। पीछे के तरफ भी एक टेबल है टेबल के ऊपर पानी का बॉटल रखा हुआ है। एक चेयर रखी हुई है बगल में।

चित्र लगा हुआ है। मतलब माताएँ सूर्य प्रणाम करते हुए दिख रही हैं। सड़क मे बहुत भीड़ दिख रही है। स्कूटी बाइक साइकिल दिख रही हैं। साइड मे खिलौने का दुकान लगा हुआ है।

यह एक किताब कि दुकान है। बहोत बड़ी सी दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी किताबे लगी हुई है।

अ म जहाँ बहुत सारी भीड़ - भाड़ लगी हुई है सभी के हाथ में गिफ्ट्स दिख रहे हैं और मैदान में कुछ बच्ची लड़कियाँ दिख रही हैं।

अ सामने अ एक औरत दिख रही है एक बच्चा दिख रहा है दो लड़की --

सामने एक बहोत ही खूबसूरत-सा बगीचा दिख रहा है फूलों का। अम्म- छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है बहोत सारे और छोटे-छोटे पौधो में रंग-बिरंगे फूल भी है।

साइड में एक टेबल बिछी हुई है उसके ऊपर एक रजिस्टर रखा हुआ है।

और बहुत सारे आदमी उस पार की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से एक ब्रिज गई है। साइड में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक खुली सी जगह दिख रही है उम जहां पे एक अ लंबी सी अ टेबल बिछी हुई है चेयर के ऊपर--